पेड़ दिख रहा है इटा से घेरा हुआ है।

कैमरा का स्टिक दिख रहा है।

अगल-बगल छोटा-छोटा पेड़ पौधा दिख रहा है।

नीचे हरे भरे घास दिख रहा है।

ऊपर वो सूरजवान दिख रहा है।

एक चेस वि श रिंच दिख रहा है।

राज अभीसान कार्यालय लिखा हुआ दिख रहा है।

सामने पर्दा दिख रहा है।

ऊपर लाइट बढ़ रहा है।

ऊपर सबका हाथ दिख रहा है।

ढेर सारे दुकान में सामान दिख रहा है।

बगल में समान दिख रहा है।

नीचे गाड़ी दो-तीन लगा हुआ दिख रहा है।

ढेर सारी आदमी दिख रहा है।

पेड़ पौधा दिख रहा है बड़ा सा पोस्टर दिख रहा ।

दो ड्राम दिख रहा है हरा में--

छोटा-छोटा घर दिख रहा है।

दो-तीन पेड़ सूखा हुआ दिख रहा है।

स्टील का छोटा-छोटा घेरा हुआ इवरिबन दिख रहा है।

लड़के लड़कियां दिख रहे है ऊपर पंखा दिख रहा है।

तस्वीर में एक गाड़ी दिख रहा है।

नीचे बॉक्स दिख रहा है।

नीचे घास जमा है अगल-बगल पेड़-पौधा है।

साइकिल दिख रहा है दो गाड़ी दिख रहा है।

अगल-बगल घर दिख रहा है।

ढेर सारा तार दिख रहा है।

ऊपर प्लस का चिन्ह दिख रहा है।

पलंग दिख रहा है रखा हुआ खोला।

एक लड़की दिख रही है नमाज पढ़ रही है नीचे मैट बिछाया हुआ है।

तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

ऊपर पंखा दिख रहे है।

घर दिख रहा है पोस्टर दिख रहा है नीचे --

ढेर सारे आदमी दिख रहे भीड़ लगा हुआ।

इस तस्वीर में ढेर सदुकान दिख रहे है।

नीचे जमीन दिख रहे है।

ऊपर पीला लाइट बर रहा है।

सामने शीशा दिख रहे है।

कप बोतल दिख रहा है टेबुल पर ढेर सारी आदमी दिख रहा है बैठे हुए।

ढेर सारी गाड़ी दिख रहा है।

अअअगल-बगल घर है सूखा पत्ता दिख रहा है।

घर दिख रहा है शीशा दिख रहे है।

डस्टबिन दिख रहे है नीचे बाल दिख रहा है।

गुलदस्ता फूल दिख रहे है ए_सी दिख रहा है।

इस तस्वीर में घर दिख रहे है।

ढेर सारी सजावट दिख रहा है फूल का।

भुक-भुक लाइट बड़ रहे हैं रंग-बिरंगे है।

दो-तीन आदमी दिख रहे है पुरा सजावट दिख रहा ।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

भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ दिख रहा है।

ऊपर आकाश ब्लू दिख रहा है।

तस्वीर मे एक दिख रहा है।

गेट दिख रहा है सामने--

ढेर सारी लाइट एबर रहा है।

ए_सी दिख रहा है तीन लाइट दिख रहा है।

बस दिख रहे हैं पेड़ दिख रहा हैं शीशा दिख रहा है।

ऊपर आसमान दिख रहा है लड़का दिख रहा है।

लाइट बर रहा है।

तस्वीर में घर दिख रहा है।